यह एक ब्यूटी पार्लर का दृश्य है जहां पे कुछ बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं और एक सामने बहोत बड़ा शीशा लगाया हुआ है। दो बैठन के लिए कुर्सियां लगाई हुईं हैं।

आगे वहाँ पे कुछ लोगों ने बैरिकेट लगा रखे हैं। अं जहाँ पे आने के लिए और यव-ए-एक आगरा का नगर निगम का फोटो है।

यह एक शॉपिंग मॉल की दुकान है। जिसका नाम वी.टू है और यहाँ पे (पर) ये रात का वक्त है इसलिए यहाँ पे (पर) बहुत सारी अंदर की तरफ लाइट जली हुई है।

ये शाम का वक्त है इसलिए यहाँ पे बोहोत से लोग टहल रहे हैं और यहाँ पे सूरज चमक रहा है।

ये एक परचूरन के सामन की दुकान है। बोहत ही बड़ा मॉल जैसा है और यहाँ पे अलग-अलग चीज़े भी दिखाई जा रही हैं।

ये एक छोटी सी नदी का दृश्य है| जहाँ पे दो बत्तखे तैर रही हैं और इन बत्तखो का रंग काले रंग का है।

यह एक मोटर साइकिल के अ शोरूम की जगह है जहां पे यहाँ बहुत सारे तरह-तरह के मोटर साइकल रखे हुई हैं।

यह एक टायर की दुकान है जहाँ पे अलग-अलग तरह के बहुत सारे टायर हैं।